और करकट का अह घर बना हुआ है।

यह एक रूम है।

जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

दु दु लाइट है।

पंडाल के बाहर बहुत ही आदमीन बैठे है कुछ खड़ा भी हैं।

और हाता के अंदर तीन आदमी है।

गेट भी हाता मारा गया है।

और हरा बैलून है और ऊपर में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है।

यह एक मॉल टाइप का दिख रहा है जोकि बहुत ही अच्छा अच्छा समान देखने को मिल रहा है।

बीया का पॉकेट है बहुत ही प्रकार के मिलता है।

और फिन पाइप दिख रहा है चरक और नीचे बोरा दिख रहा है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है।

बहुत ही अच्छा जिम दिख रहा है बैलून टागा हुआ है लाल कलर का वाइट कलर का जो कि देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है दो आदमी इन्होंने साइड में है।

एक घर है।